यहाँ पर एक चौराहा दिख रहा है जहाँ बीच में एक बड़ा सा कुछ लम्बा-लम्बा बिल्डिंग बना हुआ है और उसमें घड़ी लगी हुई है।